यह एक शादी का दृश्य है जिसमें शादी के लिए --

भगवान महाकाल को दर्शाया गया है यहां एक शिवलिंग है शिवलिंग के --

साफ-सुथरी दिखाई दे रहे हैं सामने की और कुछ स्टंप लगे हुए हैं।